यहाँ पे बहुत सारे बच्चे स्कूल के ड्रेस पहन कर कागज के साथ कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। वह कागज के साथ कुछ कलाकारी कर रहे हैं।